काफी सारे यहां पे डोर मैट रखे हुए हैं।

और ये दुकान का फोटो है एक ग्लास रखा हुवा है।

बाहर ग्राउंड है जिसमें बच्चों के झूले लगे हैं।

इस फोटो में काफी सारी मूर्तियां है।

सामने एक दीवार दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ एक झूमर लगा है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है लोगो की परछाइयां दिखाई दे रही है।

आ फ्लावर्स की डेकोरेशन दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में।

पीछे एक लड़का है जो सफेद कुर्ता पहने हुए है।

केक के ऊपर ओरियो के बिस्किट --

एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है ओम कंस्ट्रक्श जी_एस_टी नंबर लिखा है ये मल्टी ब्रांड मोबाइल शॉप --

इस फोटो में एक दरबार दिखाई दे रहा है।

और यहां पर पूरा सेटअप दिखाई दे रहा--

ऊपर की तरफ लाइटें लगी हुई हैं।

और यहां पर रात का समय है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है नीचे घास दिखाई दे रही है।

एंड कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।